रास्ता है और यहा खंबे लगे हुए है तार आसमान दिख रहा है।

यह एक गाय है जो की ब्लैक कलर की है रस्सी से बंधी हुई है एक खनोटा बना है जिसमें हरीयाली रखी हुई दिखाई दे रही है और वहाँ पर गाय--

यह एक तालाब है तालाब के किनारे पर कुछ ब्यक्ति खड़े हुए हैं| कैरेट रखे हैं कैरेट में बहुत सारी मछलियां है कैरेट का कलर पीला है एक डलिया रखी हुई है और एक कांटा रखा हुआ है।

एक नाव खड़ी है नाव में दो व्यक्ति खड़े हुए हैं पेड़ लगे हुए हैं।

यह साउंड है ब्लैक कलर का साउंड है बाजू मे बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऊपर छत की रेलिंग दिख रही है।

इसमें पीले कलर की ड्रम रखी हुई है पेड़ हैं बिजली के खंभे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।